यह स्थल बोहोत ही प्यारा है।

ईमारत का है। ईमारत अभी नई बनाई गई है। इसका गेट बोहोत बड़ा है।

यहाँ पर हमारे सामने एक स्टेशन का नाम मुज्जफरनगर बताया गया है। यह यु पी के अन्दर है।

यह फोटो क्लिक कराने --

टुकड़ा जिससे डंडे को मार कर इसके अन्दर बिल के अन्दर भेजनी होती है।